ये वाराणसी के सारनाथ द्वार का है जहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत ही विशाल प्रतिमा बनी हुई है सामने।

यह चौधरी चरण सिह का बस स्टेंड है यहां पे ढेर सारे बसें खड़ी हैं कुछ लोग बस के बस में चढह रहे हैं यह जगा बहुत अच्छी जगा है।

ये फल की दुकान हैं। जहाॅं पर एक आदमी फल बेच रहा है। साथ में एक लड़की फल खरीद रही है।

ऊपर एक डोलची में फल बांधे हुऐ हैं। फल की दुकान पे ढेर सारे फले हैं। हर प्रकार के फल हैं। ये फल की दुकान बहुत अच्छी दुकान --